मुझे यहाँ बड़े बड़े पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर कुछ आदमी और महिलायें भी दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहाँ पर कुछ लाईट्स भी दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर कुछ बौटल भी दिखाई दे रहे हैं।